यह एक किरयाने की दुकान का दृश्य है जिसमें बहोत प्रकार के समान रखे हुए हैं।

कार्यालय का दृश्य है जिसका नाम कृषि विज्ञान केंद्र सीफेट है यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें बहोत सारी पुस्तके हैं तथा ऊपर सजावट का समान है।

टाइलों के साथ इस जगह की फर्निशिंग की गई है।

यह एक साइकिल तथा खिलौने की दुकान का दृश्य है जिसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं।

जिसमें एक सड़क की तस्वीर है।

बच्चे झूलो पर खेल रहे है।

तस्वीर में बोहोत सारे कूलर रखे हुए हैं तथा कूलर के पीछे अलमारियां भी है।

छत पर लाइटें लगी हुई है।

यह एक जिम का दृश्य हैं जिम में--

भूरे रंग का दरवाजा भी है।

यह एक घर का दृश्य है जिसमें सजावट की हुई है।

दरवाजा बहोत सुंदर तरीके से सजाया गया है।